नजारे काफी सुंदर लग रहा है ये काफी बड़े लग रहे ये काफी लंबा नजर आ रहा है इसमें कुछ बच्चे वगैरह दिख रहे हैं जो वो अपने जिसके सामने कुछ कागज पेंसिल पेन वगेरह रखे हुए हैं जो उससे कटिंग करके --